और ऊपर में कुछ डिजाइन बने हुए हैं सोफा पे.

नीला कलर से पेंट है है साइड में लाल कलर है.

नीचे में फर्श पे बिछाया हुआ हैं.

नीचे एक शीशे का दरवाजा है.

यह एक सलून है जिसका नाम न्यू ताज हेर सलून हैं.

सीसी के अंदर कुछ डब्बा मे सामान रखे हुए हे.

और यह एक योगासन मे बैठे हुए हे.

एक दुकान है दुकान पर एक लड़की खड़ी हुई है।

और ऊपर मे नया नया पंखा रखा हुआ हे.

और उस साइड में एक बेसिन लगा हुआ है।

रैक बनाया हुआ है और शो पीस रखा हुआ है।

उप्पर में एक बोर्ड लगा हुआ है रोहित भेटनरी हाउस का.

पिछे दुकान है जिसमें सटर लगा हुआ है.

दोनों साइड में जंगल है.

ऊपर में कुछ लिखा हुआ हैं ए_टी_एम या आधार कार्ड से निकाल से किया जाता है.

ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है।

उसके बगल में सेजल मेडिको अंग्रेजी दवाखाना का बोर्ड लगा हुआ हैं.

बोहोत सारे लोग भी गुम रहे हैं.

एक शो पीस लाल हरा नीला है एक नीला है।

पीछे एक लेडिस बैठी हुई है। बगल में एक और पर्सन है।

यह एक ऐ_सी के लिए कंप्रेशर है.

पीछे साइड मे एक टावर हे.

बगल में भी एक दरवाजा है।

सामने मे व्हाइट कलर का पिलर हे बगल मे झाड़ियां हे.

ऊपर में फूल से सजाया हुआ है.

बीच-बीच में बलून से सजाया हुआ है.